एक बच्चों के बगल मे रखी दिखाई दे रही है।

जहा पे कई व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे है कई बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

और ए प लेडिज के पिछे एक बैनर दिखाई दे रहा है।

तो मैदान है मैदान मे हरे कलर की घास देखाई दे रही है कही पेड़ देखाई दे रहे है पेड़ नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है जो की हरे-हरे कलर की पत्तीया--

नदी है। जिसमे पानी है। उसके नदी के अंदर हाथी खड़ा हुआ है। हाथी के ऊपर--

एक रोड है। रोड काले कलर की दिखाई दे रही है।

और कई फूल लगे दिखाई दे रहे है फूलोंकी झालर लगी दिखाई दे रही है क मूर्ति दिखाई दे रही--

एक रूम में जहां पर एक लेडी डांस करती दिखाई दे रही हो रोने का चेहरा चेहरा बना रही है और लेडिस के पीछे बैनर लगा दिखाई दे रहा है।